ट्रेन के अंदर का है जहाँ पर उन्होंने टैबलें रखीं हैं बहुत सारी चेयरें रखीं हैं एक टीवी लगी है और पंखे वगैरह लगे हैं यहाँ पर और लाइटिंग वगैरह हैं झूमर उमर लटके हैं।

यहां पर बहोत सारी मशीने रखी हैब्लैक कलर की यहां बोल्ड लगे है यहाँ मिरर लगे है।

ये एक बड़ा सा जिम है यहां पर मिरर लगे है दीवारों पर एक खिड़की लगी हुई है।

और यह कोई जैंट्स है जो जिम कर रहा है जिनके कान मे एक व्हाइट कलर के ऐयरपोर्ट लगा है।

यहाँ पर में बहुत ज्यादा अम पेड़ लगे है। उम--

पुराने मंदिर बने है यहाँ पर चार मीनार है बड़े-बड़े और यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़-वेर लगे है कुछ सूखे पेड़ लगे है जिनकी लकड़ी-लकड़ी लकड़ी-लकड़ी बची है पेड़ सुख चुके है।

यहा परलिफ्ट लगी है साइड मे यहा ब्राउन कलर की चेयर रखी है ब्राउन कलर का कार्पट बिछा है जाली वाला गेट है।